और गाड़ीया खरी हुयी और आति जाति दिखाई दे रही है। और यहा पे कुछ महिलाये और आदमी हे जो की मास्क लगाकर यहा पे खड़े हुई हे। और अ बहत सारे गाड़िया इहा पे आति जाती दिखाई दे रही हे।

यहां पर कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सभी लोग जो हैं कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। और कुर्सियां जो है वह प्लास्टिक की है लाल कलर की।